और बड़ा बड़ा खम्बा है लाइट है और निचे आंगणो है।

इ फोटो के माइन एक गुफा है गुफा के माइने बहुत सारा भाटा भाटा है।

सामने की तरफ बोहोत ज्यादा बच्चे बैठे है बच्चा के हाथ में इ कागज है आगे कुर्सियां लगायेडी है टेबला है पेड़िया है।

पीछे स्कूल है आगे बस सेरेटिग है धोली धोली देश में एक छोरो चड्डा के माय आग्यो।